और उधर साइड में एक मकान दिखाई दे रहा है।

ये एक शादी का फंक्शन है इस फंक्शन में बहुत सारे लोग बैठे--

ये एक बहोत सुंदर फिटिंग है इस फिटिंग का कलर व्हाइट है।

ये एक बहुत बड़ा हरी हॉस्पिटल है।

इस स्टेज के पीछे रेड कलर के फूल लगे हैं और पीछे एक बहुत ही सुंदर आकृति बनी है और ऊपर भी रेड कलर के फूल लगे हैं।

और इसके आसपास कुछ जिम करने की मशीनें भी रखी है।

ये एक समुद्र है इस समुद्र में दो नेव है।

यह एक महल है इस महल में कई सारे विंडो लगे हैं।

इस कॉलेज में बहुत सारी बिल्डिंग बनी हैं जो कि देखने में बहुत सुंदर दिख रही हैं।

इसके पास एक व्यक्ति खड़ा है उसने व्हाइट ड्रेस पहनी है।

यह एक का क्लीनिक है इस क्लीनिक में एक महिला बेड पर लेटी लेटी है।

ये एक बुक स्टोर है उसका नाम अंकुर बुक स्टोर है और इसके बाहर सुंदर टाइल्स लगी है।

और कुछ टाइल्स भी लगी है।

इस बिल्डिंग के ऊपर कुछ ग्रिल्स भी लगी है।

एक्सरसाइज करने की बहोत सारी मशीन लगी है।

ये एक बहोत ही सुंदर क्लास है इस क्लास में कुछ टीचर्स और कुछ लड़के खड़े हैं।

एक रोड है इस रोड के साइड में एक बड़ा सा मकान है।